पानी का कलर सफेद कलर का है जो गिर रहा है पानी वो सफेद कलर का है।

वह है इंटरलॉक ईटों की मसाले वाली ईटों की।

उस पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है वो है आधी दिख रही है।

उस मोटरसाइकिल का कलर है काले कलर का। सीट का कलर है काले और लाल कलर --